यह एक मॉल है और इसमें बहुत सारा सामान रखा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं।

और इस मेज पर एक कम्पुटर रखा है।

यहां पर कुछ दुकाने दिखाई दे रही है।

यह एक साइकल की बहुत सुंदर शाॅप है।

इसके सामने एक कार खड़ी है और एक साइकल है।

यहां पर बहुत सुन्दर पेड़ पौधे दिख रहे।

यह एक बहुत सुंदर दुकान है।